यहाँ पे लड़कियों के कपड़े बहुत सारे रखे हुए हे ।

यह पेट्रोल पम्प काफी बड़ा है | यहाँ पे बहुत साड़ी गाड़िया आती हे ।

क्यूंकि भीड़ लगी रहती है ।

दुकान काफी बड़ी हे ।

यहाँ पे दूर-दूर से लोग आते हे ।

त्यौहारों में समारोह में खरीद के अपने घर ले जाते है।

जिससे लोग फेसिअल कराते हे ।

यहाँ पे लोग कसरत करने आते हैं।

जिससे लोग कसरत करते हे ।

यहाँ पे घूमने आते हे ।